इसी तरफ दो बंदा भी देखने को मिल रहे--

ऊपर में बहुत बड़ा ब्रिज भी देखने को मिल रहा है।

पीछे तरफ बहुत बड़ा लाल रंग का और सफेद रंग का बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक औरत देखने को मिल रही है जो ब्लू कलर का कपड़ा पहने हुई है।

यहां आगे नीचे में रोल नाम का शब्द दिखाई दे रहा है।

लाल रंग का लड़का का दाईं तरफ ट्रांसोल नाम का शब्द भी दिखाई दे रहा है।

यहां बहुत बरा शादी हॉल देखने को मिल रा--

यहां आगे गाड़ी रास्ता देने को मिल रहा है।

जिनके पीछे बहुत बड़ा पेड़ भी देखने को मिल रहा है बहुत सारे।

में दाये तरफ गितार भी देखने को मिल रहा है।

लाइट बल्ब भी छह तो देखने को मिल रहा है।